फोटो में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।

पक्षी के पीछे की तरफ मुझे काफी हरियाली नजर आ रही है काफी बड़े इलाके में घास पौधे उगे हुए हैं।

तालाब के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

फोटो किसी बांध के किनारे का है।

प्रवेश द्वार का गेट ब्लैक कलर का है।

और ये हिरण ब्राउन कलर का है।

जिसमें बहुत सारी बाइके और स्कूटीयां भी मुझे नजर आ रही है।

एक बेंच के ऊपर एक कांच का गिलास भी मुझे दिखाई दे रहा है।

एक ग्रीन कलर की बड़ी बस दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ मुझे कुछ आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें सजावटी चीजें भी दिख रही है।